तस्वीर किसी पार्किंग लोट का है।

तथा एक महिला जो अपने बच्चे के साथ अंदर की ओर जाती हुई नजर आ रही है।

एवं इस पे कई सारे विद्यार्थी भी बैठे हुए हैं जो अपना काम कर रहे हैं।

दिन में एक पौधा उगा हुआ दिखाई दे रहा है ग्राहकों के बैठने के लिए कुर्सियां भी है।

तस्वीर में सामने की और कुछ काउंटर बने हुए दिखाई दे रहे हैं जिन पर पार्टीशन किया गया है।

यहां एक शक्श दुकान के बाहर बैठा हुआ है।

जो काफी तेज चल रहे हैं।

यहां एक बिजली का खंबा भी नजर आ रहा है।

जहां सामने की ओर काले रंग का जानवर खड़ा दिखाई दे रहा है।

जो शीशे में खुद की तस्वीर खींच रही है।

पीछे की और पहाड़ से तेज धार में बहता हुआ पानी दिखाई दे रहा है।

सीलिंग से कई सारे डिजाइनदार लाइट लटकी हुई दिख रखी है जो जल रही है।

यहां हमें लाल अक्षरों से अशोकनगर डाकघर रांची तिरासी चार सौ दो झारखंड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

पीछे की ओर सफेद कलर का भवन बना हुआ समझ आ रहा है।

इनपर लाल तथा सफेद धारियां बनी हुई है।

जिनमें से एक गोल्डन रंग के स्याही से गौतम बुद्धा की तस्वीर बनी हुई दिख रही है।

जीनमें कुछ दरवाजे एवं खिड़कियां भी है।

यहाँ इसके गेट पर लाल कलर के बड़े बड़े अक्षर से पेज लाइब्रेरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

दीवाल पर एक टी_वी भी लगा हुआ दिख रहा है।

यह मशीन टू व्हीलर वालों को बनाने के लिए मदद आती है।

जिसके ऊपर भीम यू_पी_आई ग्रॉसरी स्टोर पे यूजिंग एनी यू_पी_आई एप लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।